अ गयवा के रंग हरियर हरियर ना करिया लौका टाटे | अ ओकरा ऊपर प्लास्टर लागल बा अ उ माटी में बा |

और खेतू में एगो गाछ ओकरा बगल में पहाड़ सब बाटे।

उकार पीछे ऐथि दन्टी बा।